ये बड़ा सा घर बना हुआ है नीच शॉप बनि हुई है स्वीट की

और ये ऊपर का घर बहुत ही अच्छा आग रहा हेगा और ये निचे ग्रीन कलर का बहुत सारी प्लेट रखी हुई हेगी बहार दोलोग कहदे हेगे

यहाँ एक मिठाई की शॉप है जहा पर अंडे

के सामने ही बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अभी के सब काफी डिजाइन किया गया है। बस। बस और यहाँ तो कुछ लोग हैं ये।

यहाँ पे काफी बड़े बड़े पहाड़ हैंगे उनके निचे पत्थर और ऊपर के तरफ से घास भी निकले होएंगे यहाँ पे पेड़ भी हैंगे यहाँ पे कुछ लोग बच्चे हैंगे जो यहाँ पे खेल रहे हैंगे यहाँ एक बड़ा आदमी है

काफी बडी और नदी लगी। उसके आस पास काफी सारे पेड पौधे होंगे। मुँह के सामने की तरह पहुँच उसमें यहाँ पर अच्छे रहेंगे। बनी हुई फॅर मुँह लिख रहेगा।